बहोत बड़ी ग्राउंड दिखाई दे रही है।

यहां पर मजदूर भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने बहोत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

सामने बिजली की तारे भी दिखाई दे रही है।

साइड पर कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

एक तालाब दिखाई दे रहा है आस पास बहुत सारे लोग--

अलग अलग कलर के कपड़े पेहनाये हुए हैं जैसे रेड पर्पल येलो वाइट ब्लू और ब्राउन कलर की ड्रेससेस है।

सामने एक पैलेस दिखाई दे रहा हैं पैलेस में कुर्सी दिखाई दे रही है।

ऊपर सजावट की हुई भी दिख रही है यहां पर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही हैं और आसमान भी दिख रहा--

सामने एक टेबल पर फ्लावर पॉट भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं यहां पर झूमर भी दिखाई दे रहें हैं।

सामने बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक भगवान की फोटो भी दिखाई दे रही है।

कुछ फोटो भी दिखायी दे रहीं हैं।

और एक बक्सा भी दिखाई दे रहा हैं।

सामने कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है।